इससे फोटो के अंदर मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है सामने एक दीवार पर पोस्टर दिखा जिसमें कुछ नाम लिखा है नाल --

पास में एक दीवार दिखाई दे रही है।

मुझे कुछ सूअर दिखाई दे रहे है और सूअर के कुछ छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे --

पास मे कुछ झाड़ियें और पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ मिट्टी दिखाई दे रही है।

कुछ चाबी और पानी दिखाई दे रहे हैं जो कोई गाड़ियों को खोलने के लिए यूज में लेते हैं वह दिखाई दे रहा एक पानी का कैंपर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे कुछ सामने व्यक्ति दिखाई दे रहे है जो कोई खेल खेल रहे है और कोई व्यक्ति रनिंग कर रहे है कुछ --

इस फोटो के अंदर एक मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है।

ये मुझे कोई मंदिर लग रहा है इसके बहार की साइड में मुझे एक कुर्सी दिखाई दे रही है लकड़ी की बनी हुई है।

इस तस्वीर में मुझे एक घोड़े की और व्यक्ति की मूर्ति दिखाई दे रही है सामने एक बिल्डिंग जैसी दिखाई दे रही है जिसपे --

होटल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर दो सोफे और कुछ टेबलें दिखाई दे रही हैं इस टेबलों के ऊपर मुझे कुछ --

इस फोटो के अंदर मुझे एक सूर्य की सनलाइट दिखाई दे रही है पास में कुछ बड़ी बड़ी क्रेने जैसे दिखाई दे रही है।

पहनाई हुई दिखाई दे रही है सामने मुझे अलमारीयो के अंदर कुछ कपड़े दिखाई दे रहे है और दीवार पे --

पानी देने वाला पाइप दिखाई दे रहा है एक मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही सामने मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

फव्वारे जैसे लगे हुए दिखाई दे रहा हैं एक पोल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ तार लगे हुए हैं और पास में बिल्डिंगे जैसे दिखाई दे रही हैं।

और एक व्यक्ति को साइकिल लेके आ रहा है पास में महिला दिखाई दे रही है और कुछ मोटरसाइकिले भी दिखाई दे रही है।

पलास्टिक के बने फूल और मालाएं जैसे दिखाई दे रही है एक दीवार पे तस्वीर भी दिखाई दे रही है।

इससे फोटो के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कोई मंदिर है इसके अंदर मुझे एक महिला और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे एक सामने पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ नाम लिखा है।